दीवारों पर पंखे लगे हुए हैं और कई सारी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं

शोरूम के दरवाजे पूरे शीशे के बने हुए हैं।

सड़क के दूसरे तरफ कुछ भवन दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी निर्माण हो रहे घर का दिख रहा है।

ऊपर चढ़ने के लिए नीचे सीढ़ी भी लगाई गई है।

बैंक पर मिट्टी का मटका भी दिखाई दे रहा है।

बाहर की ओर काफी सारे हरे रंग के बड़े बड़े पेड़ पौधे भी मौजूद है।

इसका फोटो एक आदमी ने अपने हाथों में लेते हुए दिया है।

नीचे काले रंग की थैलियां में छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर मरीजों का एक बेड दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी के रेलिंग पर हरे हरे रंग के पौधे लगते वाले लगे हुए हैं।

सामने काउंटर पर पेमेंट के लिए क्यू_आर कोड लगे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी किराने स्टोर की है यहां पर रैक पे बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

सभी टेबलो पे लाल रंग के कपड़े लगे हुए हैं जिसके ऊपर जग और गिलास रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर हटिया रेलवे स्टेशन की है जिसके बाहर कई सारी टेंपू लगी हुई है।

अंदर की ओर शेड में सीढ़ियों पर कई सारे अखबार इधर उधर बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में काले रंग का कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

स्टेडियम के बैठने वाले स्थान पर एस धोनी पवेलियन लिखा हुआ है।

तस्वीर में एक शेड भी नजर आ रहा है जो लोहे के खंभे पर खड़ा है।

यह तस्वीर एक पर्यटन स्थल का है जिसके आजू बाजू ढेर सारे बड़े बड़े तरह छोटे छोटे हरे रंग के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

काले रंग का लैंप और एक सेंट्रलाइज्ड ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

दीवाल पर एक चिमनी भी लगी हुई है जो धुआं को बाहर फेंकने का काम करती है।